यहाँ पर दो लोग हैं।

ये सामने एक एच.डी.एफ.सी. बैंक है।

उसके नीचे स्कूटियां रखी हुई है बाइक रखी हुई है। एक लड़का कॉल पे बात कर रहा है दो लड़के चल रहे हैं। एक व्हाइट --

चेक्स वाली शर्ट पहने हुआ है । ब्लू कलर का जींस पहने हुआ है । ब्लू कलर कि शूस --

स्वैटर पहने चश्मा लगाए शूज़ पहने हुआ है।

ये दुर्गा माता जी कि झांकी लगी हुई है।